हम्म और ये कार को ठीक कर रहा है जिसने शर्ट पहना हुआ है लूजर पहना हुआ है देख सकते है और मुरी लिबा कर कार में ऐसे घुसे हुए है और कार को ठीक कर रहे है।

यहाँ पे देख सकते है पता नी क्या हो रहा है जैसा जै जैसे लग रहा है अ चल रहा है फिल्म चल रहा है देख सकते है कितना अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे लड़का लड़की है सब प्रोग्राम कर रहे है देखिए यहाँ --

--और बड़े- बड़े घास बड़े- बड़े काची सब देख सकते है कितना जंगल टाइप का देखिए।